इसमें मुझे फाइनल दिख रहा है।

इसमे मुझे एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

इसमें मुझे दो लोग सफाई करते दिख रहे हैं।

इसमें मुझे हित कारनी कॉलेज दिख रहा है।

इसमें मुझे एक ऑटोमोबाइल शॉप दिख रही हैं।

इसमें मुझे हुंडई की एक शॉप दिख रही है।